और अन्दर एक मूर्ति दिखाई दे रहा है और बड़ा सा मंदिर टाइप से उधर बना हुआ --

इस बढ़िया सजाया है गुब्बारा उबारा से बेहतरीन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे जोड़ियां चल रहा है जो नीचे का फ़र्श -वर्श ढालने के लिए तैयारी कर रहे है ईटा- ऊटा लगा के धास रहे हैं ।

और इधर कुर्ची उर्सी भी लगा हुआ है चार पांच जो जेंट्स जो काम कर रहे है एक जेंट्स है जो गाड़ी-वाड़ी धो तो रहे है।